और टेबल पर भी वाइट और रेड कलर का टेबल कवर बिछा हुआ है।

है और एक लड़की अपने पैर को सेनिटाइज करा--

यहां के सामने काफी सारे लोग बैठे हुए हैं।

यहां पर काफी सारे गेम होते हैं।

और उसके उधर आपको एक गिफ्ट दिया जाता हैं आपकी टिकट्स के हिसाब से।

यह हाथी ग्रे कलर का है।

लाल और सफेद कलर का है।

सफेद कलर की यहां पे कपड़े वॉश होते हैं।